जिस ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है एक ने अ-अ-ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और भी मसाज की क्रीम दिखाई दे रही हैं ऊपर हमें कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं ऊपर सीलिंग दिखाई दे रही है सीलिंग में कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

दे रहे हैं यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं कई सारे बैनर लगे हुए हैं इसके बगल मे भी हमे कुछ बैनर्स दिखाई दे रही हैं कुछ कचड़े की पेटियाँ दिखाई दे रही --

यहाँ नीचे हमे कार्पेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है इसके पीछे हमे और भी कुछ दिखाई दे रहा है जिसमे भी ढेर सारी डिज़ाइन बनाई गयी हैं।

बाहर हमे एक रीसेप्शन दिखाई दे रहा है जो की एंट्री गेट के लिए दिखाया गया है और सामने और भी बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्लो-फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।

मूर्तियां दिखाई गई हैं सामने हमे कुछ और भी इक्विपमेंट दिखाई गए --

हम देख सकते है यहाँ पे हमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा उसमे सफेद बादल दिखाई दे रहा पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा जिसमे हमे ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

इस द्रश्य में हम देख सकते है यहाँ पे हमे खाना खाते हुए लोग दिखाई दे रहै है कुछ बूढ़े आदमी है कुछ पु पुरुश है कुछ महिलाए है ऊपर हमे सीलिंग दिखाई दे रही है सीलिंग पे हमे पंखे नज़र आ रहै है।

कुछ लाइटे है सामने हमें ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है आस पास हमे कुछ लोग दिखाई दे रहै है कुछ बीम दिखाई दे रही है नीचे हमे टाइल्स दिख --

इस दृश्य मे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ऐ.सी दिखाई दे रहा है ऊपर सीलिंग दिखाई दे रहा सीलिंग पे लाइट लगी हुई है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो की एक्सर्साइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एक योग आसान या फिर किसी सीन के अंदर का दृश्य है यहाँ पीछे हमे एक खिड़की भी दिखाई दे रही है आस पास हमे कुछ गेट दिखाई दे रहे हैं गेट मे परदे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे हमे कुछ और भी कचरे फेकने के लिए समान दिखाया गया है नीचे हमे फर्श दिखाया गया है ऊपर सीलिंग दिखाई गई है।

यह एक ऐरपोर्टक के अंदर का दृश्य है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पीछे एक प्लैन खड़ी हुई है इसकेआगे एक आदमी खड़ा हुआ है ।

जो की प्लैन के सामने फोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहा है पीछे एक औरत खड़ी है जो की अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाती हुई नज़र आ रही है यहाँ कुछ और भी क्रू मेम्बर्स है रन्वै पे एक अ-प्लैन खड़ी हुई है।